और ए को बनाने के लिए एक मिस्त्री--

में अल्ट्राटेक का लिखा हुआ है सीमेंट का ब्रांड --

और कितना अद्भुत और कितना --

गेट हैं क्यूंकी गेट का जो डिजाईन है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं और--

यह एक बहुत ही जादा अद्भुत और अच्छी--

और ये जो पंडाल है ये गोल आकृती की बनी हैं।

पैसेंजर बैठे हुए है और कुछ पासेंजर --

सीट पे बैठे है और कुछ पैसेंजर तो --

जैसा की आप यहाँ देख ही सकते हैं यह एक बहुत ही खबसूरत और बढ़िया --

और ये जो ग्राउंड है ये बहोत ही अच्छा तरीके से सजाया गया हैं।

और ये जो घूमता हैं तभी हवा देती हैं |

और पुल के नीचे बहुत ही ज्यादा पानी होने के कारण --